ये सजावट रंग बिरंगी की हुई है।

बिजली वालों ने लंबे लंबे खंबे लगा रखे हैं।

ये एक शॉप है शॉप के ऊपर बहोत ही सुंदर--

एक गाड़ी भी खड़ी है और एक साथ ट्रैक्टर भी खड़ा है।

और एक बैंक भी दिखाई दे रहा है।

पिक्चर में एक बस भी नजर आ रही है।

एक टेबल भी है और इसके पास एक पेन भी पड़ --

सुंदर हैं और यहां पर बहोत ही सुंदर-सुंदर ग्रीनरी भी हैं वृ --

यह एक घर की पिक्चर है।

नीचे घास भी बहोत हरा है।

किन्नू का बाग है ये बाग गंगानगर से अबोहर के रास्ते में पाया जाता है।

इसके पीछे एक पाम का वृक्ष भी लगा हुआ है।

हॉस्टल की मेस है यहां पर बच्चे खाना खा रहे--

यहां से मेडिकल पर कोई भी दवाई हम लोग ले सकते हैं।